और ऊपर में डेकोरेट किया गया है।

और फेस बेसिंग वॉश बेसिन मतलब दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बेडरूम है जिसमें--

बहोत सारे परदे लगे हुए हैं मच्छरदानी लगी हुई है और--

जमीन पे मैट बिछि है ग्रीन कलर की।

ट्रक खड़ी है रोड के पास और स्कॉर्पियो पेट्रोल डलाने आया है रोड लाइट जल रही है खंभो में --

इस चित्र में खिलौनों की दुकान है जिसमें बहोत सारे खिलौने रखे गए हैं और बहुत सारे लाइटे जल रही है ऊपर में।

चित्र में एक बहोत बड़ा रिसेप्शन पार्टी हो रहा जि--

और अंदर में सामान दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ी सी मन्दिर है।

एक सौ एक हजार भी कहा जाता है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें व्हाइट टाइल्स लगी हुई हैं।

दुर्गा जी की मूर्ति रखी गई है।

बहोत सारे लोगों को भंडारा का प्रसाद खिलाया जा रहा है।

ये चित्र में बोहोत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।